और इसपे कई सारी इक्विपमेंट हैं यहाँ पर।

और यहाँ पे एक शायद छोटी-सी शॉप है रहने का और एक--

लकड़ी का पुल है छोटा-सा जिसपे लोग पार करते हैं रास्ता कई सारे बच्चे जा रहे हैं बाइक जा रही हैं बुड्डे जा--

ये स्टेयर केस खेत बने हैं जहाँ पर खुदाई हो रखी है यहाँ पे कुछ उन्होंने बो भी रखा है शायद।

और ये कई सारे पेड़ हैं यहाँ पर और यहाँ एक छोटा सा पूल दिख रहा है मुझे जो कनेक्ट करता है और खेत में बहोत सी चीज़े उगाए --